जिनमें कुछ कलर हरा है कुछ कलर लाल है कुछ कलर काला।

यह एक सलोन है सलोन में बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं जिनका कलर पीला सफेद बैंगनी और हरा है।

पास में एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने हल्के नीले और काले कलर की पैंट पहनी हुई--

सड़क के बीच में दो खंबे लगे हुए जिनका कलर भूरा है।

एक पे पौधा लगा हुआ है जिसमें हरे कलर की पत्तियां लगी हैं।